यहाँ पर सारे लोग मिलकर पूजा कर रहे हैं बहुत ही सुंदर जगह है।

बड़े-बड़े यहाँ पर मछुआरे भी आते हैं फिशिंग करते हैं।

आसमान मस्त नीला दिख रहा है।

ये दिखने में तो मुझे महल जैसे ही लग रहा है महल का कोई अंदर का भाग है।

मैं यह कह सकता हूं मुझे तो कंफर्म नहीं है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यह सुकमा का मेला--

मस्त लाइट से जले हुए डिजाइन बनाए गए हैं झूलनो में भी सारे लोग जोल रहे हैं.

यह एक होटल रेस्टोरेंट है जहाँ पर लोग डिनर लंच --

देखने में काफी खूबसूरत है ये होटल --

करे लोग के जो बाल कटवाने आते है शेविंग मसाज आदि करवाने आते हैं तो यह भाई करते हैं।

ये छोटे से दुकान में भी अच्छे से बाल काटते है।

कोई वाक करने आता हैं कोई ऐसे ही घूमने आ जाते हैं।

ये जो तस्वीर देख रहै हैं ये है सुकमा जगदलपुर रोड --

मुझे देखकर यह फोटो को तो लगता है कि ये कोई बड़ा प्राचीन सा मंदिर है जहाँ पर लोग--

चढ़ावा वगैरा करते हैं ए देखने में भी बहुत ही ज्यादा सुंदर है और इसका डिजाइन भी बहुत ज्यादा अच्छा है।

पंद्रह अगस्त के समय का यह फोटो है जहाँ पर झंडा फहराया --

यह एक बहुत ही सुंदर वॉटरफॉल मतलब की वॉटरफॉल है।

मैं कह सकता हूं की पहाड़ियों के बीच से निकलती निकलता हुआ पानी जिसे हम जानना कहते हैं।

कुरकुरे चिप्स खाने पीने के लड्डू वगैरा --

आना-जाना क्र रहे है तो दिक्कत जा रहा है इसमें तो यहाँ पर इस फोटो को दर्शाया गया है कि यहाँ पर--

ज्वाइन की मैडम है वह सब को खेलने के लिए बाहर निकाले हैं और यह बच्चे सब एक --

यह एक रेस्टोरेंट है जो जहां पर यहाँ पर लोग--

एहा देखकर तो मुझे यह लग रहा है कि ये हमारे सुकमा का दुर्मा का वाटरफॉल है मतलब ये--

यह एक पेट्रोल पंप है काफी ज्यादा सुंदर और बहुत बड़ा पेट्रोल पंप है।

और यहाँ पर आते हैं एक्सरसाइज वर्कआउट अपने शरीर को फिट बनाने के लिए यहाँ पर जिम करने आते हैं।

यहाँ पर बड़ी चट्टान में चढ़कर नीचे का --